ऊपर से एक आदमी फोटो सी लागरी है उपर एक लाल लाल से फोटो एक पंखा लाग रयो उपर एक पंखो घुमे इने एक अलमारी इने और एक अलमारी धोलो --

बड़ी सी डोली जाली सी लागरी है उन पानि सोक्नो सरो अन्ने खिस्सपटी है निलो-निलो रंग उन्ने उपर चढ़न घातरयो। उ पचत ना कन्ने नुम --

खम्भों है खम्भा के उपर दो लाइट सी लागरी इन घना सारा खम्भा दिखे इने एक मोटरसाइकल के ऊपरे आदमी बैठो है घर सो है बढ़ो सारो आगे पोस्टर सो --